जंगल दिख रहा है| हरे हरे पेड़ दिख रहे है |

पानी दिख रहा है। तालाब दिख रहा है|

रा है। रेड कलर का व्लॉगर दिख रहा है। पिंक कलर --

रहा है। मकान दिख रहा है। बिल्डिंग दिख रही है। दिख रही है।

आम का पेड़ दिख रहा। आसमान दिख रहा है।

ग्राउंड दिख रहा है पर ये इतना ही ग्राउंड बना हुआ है।

बहोत सारी पेंटिंग दिख रही है। चर्च दिख रहा है। बहोत सारे जेंट्स दिख रहे है। दो लेडीजे दिख रही है। एक बच्चे दिख रहे है। --

गेट दिख रहा है पिलर दिख रहे है बल्लिया दिख रही है।

खजूर दिख रही है। शिवलिंग दिख रही है।

बहोत सारे हरे - हरे पेड़ दिख रहे है। लाईट के तार दिख रहे है।

बहुत सारे बॉक्स दिख रहे हैं।

लकड़ी का अलमारी दिख रही है। बटन दिख रही है। सुस --

सड़क दिख रही बाइक दिख रही।

अत्र दिख रहा है शूज दिख रहे हैं।

ब्लैक ब्लैक डंडिया दिख रही है। ज़मीन दिख रही है।

जरा हरे-हरे पेड़ दिख रहे हैं।

आसमान दिख रहा है। बहोत सारा हरि हरि पेड़ दिख रहे हैं। धुर्वा दिख रही है।